एक में बहुत सारा बृक्ष है आसमान में बहुत सरे बदल छाए हुए हैं और इसमें और इसमें एक मोटरबाइक जो उसके आगे में खड़ा किया गया है ।

और साइड में एक व्यक्ति खड़े है और आगे बहोत सारा सामान गिट्टी बालू इत्यादि इत्यादि रखा हुआ है जिससे इसको बनाने में मदद मिलती है।